यह एक बहुत बड़ा मंदिर है जोकि काला और सफेद दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है जोकि पीला और सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।

इसमें कई सारे दरवाजे और खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

ये बाइक भी दिख रही है जो कि काला कलर के है।

अनानास भी दिखाई दे रहा है और टेबल भी दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर ब्लू कलर के टापर से ढका गया है और बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं।

इसमें नीचे टाइल्से बिछाई गई है जो कि भूरा औ सफ़ेद कलर का दिख रहा है।

और कार भी दिखाई दे रहा है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

जो की सफेद नजर आ रहा है।

नल भी दिख रहा है जो की काला ऑरेंज और सफेद कलर का दिख रहा है।

यह एक रूम है जिसमें की सफेद कलर से पेंट किया हुआ है।

टेबल भी रखा हुआ है और कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

वाजा के बाहर टाइल्स बिछाई हुई है।

बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जो की क्रीमी कलर से पेंट किया गया है।

बजरंगबली भी दिखाई दे रहे हैं और त्रिशूल दिख रहा है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और चाय भी दिखाई दे रहा है।

और बोतलें भी दिखाई दे रही है और ग्लास भी दिख रहा है।

यहां पर पहाड़ भी दिख रहा है।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि पीला कलर से पेंट किया हुआ है।

बाल्टियां दिख रही है जो की ब्लू हरा और सफेद दिखाई दे रही है।

बहोत सारे बोड़ा भी रखा हुआ है घंटा भी दिखाई दे रहा है।

घर भी दिख रहा है जोकि सफेद कलर से पेंट किया हुआ है और एंटीना भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ लिखा हुआ भी है।

कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत ही बड़ा तालाब है जिसमें की बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

एक कुंआ भी इसके बगल में दिख रहा है जो कि काला दिखाई दे रहा है।

यहां एक मार्केट दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी आदमी दिखाई दे रहे हैं ।